एंड एक डिज़ाइन वाला जो बिना है वो रखा हुआ है।

ये भी आ मुसलमान का मस्जिद है।

यहाँ पे भी एक डाँकघर है। यहाँ हमीरपुर एंड नीच में एक बैनर हो-ह्वै इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैनर है।

एक बैनर लगा हुआ है। उसमें लिखा है गेट में करजालय प्रोभागीय वना धिकारी।

यहाँ पे बहोत सारा पुल है एंड --

यहाँ पे बहुत स सफेद कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है पेड दिखाई दे रहा है एंड यहां पे कुछ लिखा आ रहा है एंड हामीरपुर लिखा है।

एन्ड उसके सामने एक छोटा घर है जो के सफेद रंग का एन्ड लाल लाल रंग का--

यहाँ पर दूर तक घास है एंड उसके बगल में अ - दू तक पेर है।

यहां पे एक जिम घर है। जिम करने के लिए बोहोत सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है एंड उ उच्च ऊपर में चार लाईट लगा हुआ है सफेद रंग का एंड नीचे में बोहोत बहो सारे लोग जिम कर रहे --